जहा पर अगल-बगल हरे-भरे पेड़ है और नीचे की घास सुख चुके है और दूर पाहाड़ी दिख रहा हैं ओर पहाड़ी के ऊपर आसमान दिख रहा है जोकि बहुत ही अच्छा लुक --

यह फोटो किसी कॉलोनी काल है। इसके दोनों साइड इमारतें बनी हुई हैं और इमारतें की जो खिड़कियां हैं --

उसे यू-सेप बनाया गया है और इन दोनों इमारतो के बीच में एक गेट है उसे भी यू-सेप का बनाया गया है।

ये फोटो सोफा का है लकड़ी का सोफा बनाया है जिसको बहोत ही अच्छा डिज़ाइन से डेकोरेट किया है।

एक महिला जोकि येलो कलर की ड्रेस और ग्रीन कलर की ड्रेस ओर एक ब्लैक लड़की चुंदरी पहन कर के मछली को देख रही है।

इस फोटो मे एक ग्रिल दिख रहा है ओर ग्रिल के अंदर कन्स्ट्रक्शन का काम चल रहा है।

और इस कन्स्ट्रक्शन का काम जहां पे चल रहा है उसे चारों तरफ से बॉन्डरी से बांधा हुआ है। चारों तरफ से बॉन्डरी है इसके और बीच में एक कुआ जैसे है।

जोकि दोनों रजाइयां अलग-अलग कलर की है और यह एक रूम के बेडशीट का फोटो है।

यह फोटो किसी स्कुल या कॉलेज का है जहाँ पर सामने एसी लगा हुआ है और बेठे बेठने के लिए बेंच है।

और यह फोटो में जंगल बहोत ही हरा भरा दिख रहा है और नीचे की पेड़ पौधा भी बहोत हरा है।